बिल्डिंग में बहोत सारे वायरस लगाए हुए भी दिख रही है।

मुझे यहां वॉल में कुछ तस्वीर बना हुआ भी दिखाई दे रही है।

घर के अंदर में मुझे बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रही है।

मुझे यहां घर के आस पास में छोटे छोटे घास दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे टीना से बना हुआ घर भी दिखाई दे रही है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रही है।

पीछे मुझे एक आदमी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक कपड़ा से बना हुआ टेंट दिखाई दे रही है।

और ऊपर बहुत सारी लाइट्स लगे हुए हैं।

मुझे यहाँ बैंच भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे रेस्टोरेंट दिखाई दे रही है।

टेबल और चेयर रखी हुई भी नजर आ रही है।

यहां पर मुझे छोटे छते मग दिखाई दे रही है।

नीचे जमीन में छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रही है।

और पीछे मुझे पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रही है।

पीछे मुझे सुगरकेन का पेड़ दिखाई दे रही है।

और केले के पत्ते दिखाई दे रही है।

और मुझे यहां एक ब्लू कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ऊपर मुझे वोडाफोन जोकी और मैक्रोमैन का पोस्टर दिखाई दे रही है।

अंदर में मुझे बहुत सारे खिलौने लटकता हुआ दिखाई दे रही है।

यहां मुझे सूखा हुआ बैंबू और तखता के टुकड़े दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बस्ता के अंदर में ग्रीन मिर्ची रखा हुआ दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे गाजर भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे सड़क दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर दुकान दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर में बहोत सारे सामान और कपड़ा बिक्री करता हुआ दिख रहा है।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

सड़क के बीचों बीच एक जानवर भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे बाहर में पंखा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक चप्पल भी दिखाई दे रही है।

बहोत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं।